के हाथ में एक फ़ोन है उसके हाथ मे वो घड़ी पहने हुए है।

एक लड़की ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहने दिखाई दे रही है ।

नीले रंग की कुर्सी भी है ये दो क्रीम रंग की अलमारी और भी हैं।

यहाँ पर एक बहुत जड़ वाला बड़ा-बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।